ग्राउंड के आस पास बहुत सारे पेड लगे हुए है और एक लड़का यहाँ नजर आ रहा है जो के--

हे ये राम नगर कवर्धा में हे यहाँ पे बहोत सारी बच्चों के खाने की चीज़ लगी हुई है।